यह रोड किनारे एक मछली बाजार है जहाँ लोग मछिया खरीदने आते हैं।

यह एक स्टेशनरी है जंहा सामने कैलक्यूलेटर पड़ा है इस स्टेशनरी का ओनर मोबाइल लिए हुए सामने देख रहा है।